यहाँ पर बहुत सारी अच्छी डिजाइन भी है गुब्बारो भी अच्छी डिजाइन है लाल कलर कि दिल के डिजाइन है एक एक आदमी है वो फोटो खिचवा रहा है कुछ गुब्बारे नीचे है और कुछ ऊपर और ए_सी भी लगी है और चेयर भी है।